बहुत बढ़िया चित्र है भाई जो देखने में बहुत ही ओसम लग रहा है भाई क्या ही बोलू मतलब कुछ पर्दाएं भी लगी हुए है बड़े-बड़े सिलेंडर भी रखे हुए है लेकिन बेसि टाइल्स लगी हुई है भाई बहुत बढ़िया टाइल्स लग रही है बगल में एक काउंटर भी रखा हुआ हैं।

ए आदमी भी खड़ा हुआ जिसने नीली ड्रेस पहन रखी हुई है मुँह पे सफेद मास्क लगा रखा है एक दरवाजा भी दिख रहा है भाई पीछे उसके--

बढ़िया लग रहा है भाई मतलब देखो यार क्या ही सीन है क्या बुके जमी है यार बुक डिपो है एक स्टूल भी डला है बैठने के लिए काले कलर का और बड़ी-बड़ी लाइटें अभी जल रही है छोटी लाइटें भी जल रही भाई --

सामने दरवाजा भी दिख रहा है ये कुछ फूलों का गुलदस्ता भी खड़ा है पादरी ने कुछ हाथों मे कुछ कागज सा पकड़ रखा है भाई ये कुछ पादरी और खड़े है जिन्होंने चश्मा लगा रखा है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ --